रेड ट्रेन के ऊपर येलो कलर से ट्वेनटी वन सिक्स फोर जैसा कुछ लिखा हुआ है।

ऐपल के नीचे से स्टेयर्स आया है।

उसके किनारे में छोटा सा सुंदर सा गार्डन जैसे है।

और सामने में बहुत बड़ा पहाड़ है जिसमें बहुत सारा पेड़ है।

बीच के किनारे में बहुत सारा पहाड़ भी है।

और ब्लू टेबल्स हैं और रेस्टोरेंट में काफ़ी आदमी बैठे हुए हैं।

आसमान में बहोत क्लियर आसमान दिख रहा --

और बहोत क्लियर और साफ आसमान दिख रहे ऊपर में --

और रोड पे काफी कचरा दिख रहा है पत्तों का कचरा सब।

शॉप में एक आंटी जाती हुई दिख रही है और शॉप के ऊपर में बहुत सारा क्लॉथस टंगा हुआ है ब्लू ग्रीन कलर का अलग अलग।

ये क्लोथ शॉप में ग्रीन शर्ट और एक ब्लैक पेंट भी लटका हुआ दिख रहा --

ये टर्मिनल के अंदर में एक वॉशरूम जैसा है जिसपे लिखा हुआ है शौचालय --

टाल के बीच में एक स्टेज लगा हुआ है जिसपे ब्लू पिलर्स दिया हुआ है।

इसमें शिव जी काली मां दुर्गा मां का भी फोटो दिख रहा है।

और इधर वॉल पे बहोत सुंदर ही पेंटिंग बना हुआ है।

इसमें दो ट्राइबल आदमी जैसा भी पेंटिंग दिख रहा है।

इस पहाड़ में भी एक माउंटेन रोड जैसा दिख रहा है।

यहां पे ये क्लास रूम दिख रहा है क्लास रूम में बहुत सारा बेंच दिख रहा है।

व्हाइट शर्ट पहना है शॉप के अंदर में एक बेंच है जो की रेड और ब्लैक कलर की है।

इधर में एक पेड़ भी दिख रहा है एक कार के पीछे।

शॉप के बाहर में बहोत सारा रेड और व्हाइट बलून बलून लगा हुआ है।

गेम में बहुत सारा पत्थर दिख रहा है और पेड़ दिख रहा है।